सामने भी एक घर बना हुआ हेगा यहां पे तो बिजली के तार भी लगे हुए हेंगे उसके साथ-साथ खंबे भी लगे हुए हेंगे।

ये एक मोल हैंगा जहाँ पे छोटे बच्चों की जैकेटें मिल रही हैंगी हर कलर की | यहाँ पे तो पिंक कलर की भी हेगी तो येल्लो कलर की भी हेगी तो मल्टी कलर की भी हैंगी यहाँ पे तो परदे भी लगी हुए हैंगे।

दुकान है जिसपे डम्मीस स्वेटर पेहने हुए है लम्बे-लम्बे वाले स्वेटर और --